जैसा कि हम देख पा रहे हैं लग रहा है की ये सब शादी है और दूल्हा --

जैसे कि हम देख पा रहे हैं लग रहा है किसी चीज़ का प्रोग्राम होने वाला है और पूरे --

और बहोत सारी बाइकें होटल के बाहर पे खड़ी हुई है और एक व्यक्ति हमको दिख रहा है |

जैसे की हम देख पा रहे हैं लग रहा है कोई बाजार है और एक बस और एक टेम्पू भी --

जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये यह एक बैंक है और बैंक के ऊपर बोहोत बड़ा बोर्ड लगाया गया है स्टेट बैंक --

सजाया गया है और उधर से दो व्यक्ति आता हुआ दिख रहा है और किसी का मतलब लगाया गया है।